ऊपर एक प्लेट रखे हुए हैं और उसमें बहुत सारे जलेबी रखे हुए हैं।

और यह मैन रोड है सामने मे ।

और जलसार पार्क है देवघर का और बिल्डिंग कुछ दिख रहे हैं।

और एक बच्चे हैं जो पिला कलर की टी शर्ट पहने हुए है।

यह एक बेडरूम है जो बेड का बेडशीट व्हाइट कलर का है।

कुछ बच्चियां के पास भी पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

बोरा में बहुत सारे सब्जियां रखे हुए हैं और केला का गुच्छे रखे हुए हैं।

और गिट्टी भी है बहुत सारे मजदूर काम कर रहे हैं बालू भी है।

दीवार में एक तार लटका हुआ है।

जो इस दुकान में बहुत सारे रैक लगे हुए हैं और इस रैक में बहुत सारे सामान्य रखे हुए हैं।

और इस होटल के अंदर बहुत सारे लोग खड़े है।

सीलिंग में दो अरझास्ट फैन लगे हुए है।

पीला कलर का घर का चित्र है।

पीछे पेड़ पौधे लगे हुए है।

यहाँ एक झंडा भी दिख रहे हैं।

ऊपर में एस_बी_आई का बोर्ड लगा हुआ है।

बहुत सारे लोग नहा रहे हैं।

कुछ व्यक्ति नहा भी रहे हैं।

एक लड़का कैप पहना हुआ खड़े हैं।

अल्वेस्टर का गैरेज टाइप का बनाया है।